प्लेट ब्लैक कलर की प्लेट में और स्पून और पोक भी रखा हुआ है।

रखी हुई हैं। कार के सारे दरवाजे खुले हुए हैं कार सफेद कलर की हैं और--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

बहुत ही बड़ी और सुंदर दिख रही है।